और यहां पे नीचे स्टूडियो का भी कुछ लिखा हुआ है दिन का समय नजर आ रहा है।

दीवार जो है व्हाइट कलर की है एक खिड़की नजर आ रही है।

रात का समय है काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं।

और यहां पर कोई बच्चा ये नजर नहीं आ रहा है।

इंग्लिश सीट जो है वह नजर आ रही है।

और फर्श जो है वो टाइलों वाला है व्हाइट कलर की टाइलें लगी हुई है।

इस फोटो में एक लड़का दिख रहा है जिसने हेयर कट करवाया हुआ है।

व्हाइट कलर की दीवार है उसके ऊपर कुछ पोस्टर चिपके हुए हैं खिड़कियां भी हैं परदे भी लगे हुए हैं।

नीचे लिखा है पहले चाय फिर लिखा हुआ है डोनर फैक्ट्री ऊपर लिखा है बर्गर एट रूपीज फोर्टी नाइन --

और दिन का समय नगर आ रहा है हमें--

शॉवर्स डिफरेंट डिजाइन में हैं नए से ले के पुराने सारे डिजाइन दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे लिखा है कोचिंग सेंटर सरकारी नौकरी--

और यहां पर एक लड़के की फोटो है जो की हाइड की हुई है उसका नाम है मिस्टर परिमल कुमार जो डायरेक्टर हैं।

और टेबल लगे हुए हैं तीन और चेयर्स है।

इसके ऊपर एक बुक भी रखी हुई है।

और फर्श जो है वो ब्लैक कलर का है।

सामने दो लड़के खड़े हुए हैं एक लड़का जो है वो पोज मार के फोटो खिंचवा रहा है और दूसरा लड़का फोन पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।

और डोअर पूरा वाइट कलर का नजर आ रहा है।

एक गेट भी नजर आ रहा है जो की अंदर ब्राउन कलर का गेट है।

यहां पर एक लड़का है जो रंगोली बना रहा है एक लड़का है ब्लैक कपड़े पेहन के खड़ा हुआ है।

यहां सामने सीट है जो मतलब कि जिन पे ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा हुआ है।